बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे देखने से पता चलता है की यह कोई मार्केट है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिनका ग्रीन कलर है और यहाँ पे ऊपर से बादल भी दिखाई दे रहे हैं जिनका रेड कलर है।

यहां पे बहुत बड़ा तालाब सा बना हुआ है जिसमे पानी भरा हुआ है और इसके अंदर एक नाव भी है जिसमे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।